यह एक किला है जो की काफी ज्यादा पुराना लग रहा हैं इसका सभी रंग छूट चुका हैं और अब ये ब्राउन कलर का नजर आ रहा हैं पीछे की तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहैं हैं और दूर-दूर तक यहाँ--

यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हैं।

ड्रेस कुछ येलो और कुछ ब्लू कलर मे है और बोहत सारे लोग पीछे की तरफ बैठ कर उनको देख रहे है।

एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जोकि सुनशान पड़ा हुआ हैं।

यहाँ एक गेट है जोकि पिंक कलर का लग रहा है और इस गेट के ऊपर कलाकारी हुई भी है यहाँ पर --

यह एक पार्क है जिसमे भिन भिन तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए है यहां पर सभी अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए है और बोहोत रंगबेरंगी नज़र आ रहे है।

और पीछे की तरफ एक लाइन मे पेड़ लगे हुए है यह एक पार्क है जहाँ कुछ लोग आ जा भी रहे है।

यहाँ पर कर्वधा लिखा हुआ है।

और यह एक बहोत पुराना किला नज़र आ रहा है जिसकी गुम्मद का सारा रंग छूट गया है और यह अब काला-काला नज़र आ रहा है यह बहोत ही पुराना लग रहा है और यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे भी है।

यह पेड़ हरे रंग के है और यहाँ पर कुछ समान भी रखा हुआ है यहाँ पर बीच में कुछ रोड भी जा रहा है लेकिन कोई इंसान नजर नही आ रहा।